यहां पे फंक्शन पार्टी है।

साड़ी से सजावट की गई है।

हरे भरे पेड पौधे लगे हुए हैं।

रस्सी पे कपड़े पसारे गए हैं।

यह बहुत बड़ा कॉलेज है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह बहुत बड़ा कंपनी है।

यह बहुत बड़ा कमरा है।

उपर में एक रस्सियां लटकी हुई है।